हमे यहां पे कुछ लकड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारा टूटा हुआ सामान दिख रहा है कुछ बोरिया में पढ़ा हुआ है। हमें यहां एक आदमी बाइक को ठीक करता हुए दिखाई दे रहा हमें घर के अंदर एक --

रास्ता दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है और साथ में हमें यहां पे हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

जहां पे हमें सड़क पे कुछ काले रंग का दिखाई दे रहा--

यहां पे बहुत सारे पैकट दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पे कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ केले दिखाई दे रहे है ऑरेंज लि अह--

यहां पे बहोत सारी कुर्सियां लगी हुईं हैं हमें यहां पे कुछ बड़े बड़े फैन दिखाई दे रहे हैं।

इस कुछ सीढ़ियां लगी हुई दिख रही है यहां पे हमें दिखाई दे रहा है ये किसी--

हमें यहां पे एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है जिसपे पेपर्स फ्राई डॉट कॉम लिखा हुआ है।

कुछ हमे यहां पे मैना दिखाई दे रही हैं हमे यहाँ पे उल्लू दिख रहे हैं।

हमें यहां पे बहोत बड़ी सोफो की दुकान--